ऊंचा बा और कोहरा वोहरा बा लागत ता थंडी का मौसम बा --

कुल अंदर लाइटिंग वाइटिंग भी लउकता फिन निचे सीढ़ी वीडी भी लगल बा फीर एसीओ लगल ह।

देखत तानी की स्टेशन लौकत बा सामने और एहरियो देखत तानी सामने कोई पेड़ वेड भी लौकत बा हरा हरा।